और एक बोर्ड पे लिखा है स्कूल ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग और बहुत बड़ा सा यह एक स्कूल है।

यहां पर गन्ने भी दिखाई दे रहे हैं यहां पर एक लड़की दिखाई दे रही है जिसने रेड कलर का क्लेचर लगा के रखा है।

यहां पर नीचे डोमिनोज की भी दुकान है डोमिनोज की दुकान पे के आगे बहोत सारी नीले कलर की--

गाड़ियां खड़ी हुई हैजिसके ऊपर नीले कलर के डब्बे रखे गए हैं और बोर्ड लगा --

यहां पर बहुत सारे लोग घूमने आए हुए हैं और वह बिल्डिंग के आगे बहुत सारी फोटो खिंचा रहे हैं यहां पर रोड दिखाई दे रही है।

यहां पर आने से बहुत सुकून मिलता है यहां पर बहुत बड़े-बड़े पत्थर हैं और यहां पर बहुत बड़े-बड़े पेड़ हैं।

और यहां पर एक बिल्डिंग पे ब्लू कलर का पोस्टर लगाया गया है उस पर सफेद कलर से चाणक्य आई_ए_स अकेडमी लिखा गया है।

और उसके पीछे बहुत सारे फल भी रखे गए हुए हैं जैसे सेव फल वाटरमेलन और सब कुछ --

अप टू सेवन्टीन थाउजेंड और भी बहुत कुछ लिखा गया हुआ है।

राजीव रेस्टोरेंट स्वीट एंड स्नेक्स और उसके नीचे बहुत सारी पेप्सी भी बनी हुई है।